दीवार के बाहेर रोशन बड़ी सारी लाइट लगाई हुई है रोशनी के--

जिसने सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग का नीले रंग की ट्राउजर पहना हुआ है सर पर एक टोपी रखी हुई है और दो मोटरसाइकिल नजर आ रही --

ऊपर तारें नजर आ रही हैं जो कि काले रंग की हैं सामने एक रक्षा नजर आ रहा है जो कि काले और ऑरेंज कलर का है।

अ मशीनों के रंग सफेद हैं फर्श डब्बों से बनाया गया है जो कि सुरमई और काले रंग का है।